टेबल्स और आकृतियों के इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हमारे दो उद्देश्य है
पहला है यह समझाना के टैब्यूलर परिवेश का प्रयोग कर टेबल्स कैसे बनाए
दूसरा उद्देश्य है के टेबल परिवेश का इस्तेमाल कर लेटेक डाक्यूमेंट्स को टेबल्स में कैसे शामिल करे
यही तरीका इस्तेमाल कर सकते है आकृति को शामिल करने के लिए
हमने देखा है के कैसे टाइटल याने शीर्षक पेज बनाए इसमें टाइटल है लेखक की जानकारी क्रिएटिव कॉमन्स कॉपीराइट की जानकारी ये सब समीकरण वाले ट्यूटोरियल में समझाया गया था
आज की तारीख आखरी कॉलम दिखाई दे रहे है जोकि इस कमांड द्वारा बनी है
अगले पेज पर चलते है
अब मैं यह टेबल क्रमशः कैसे बनाना है यह समझाऊँगी
एक साफ स्लेट से शुरुवात करते है
मैं इन कमांड्स को डिलीट करती हूँ
संकलन करती हूँ और साफ स्लेट से शुरू करती हूँ
बिगिन टैब्यूलर और एंड टैब्यूलर के इस्तेमाल से टैब्यूलर परिवेश को बनाया जाता है
मैं इसे यहाँ करती हूँ

बिगिन टैब्यूलर के पास ब्रेसेस के भीतर जो र र अक्षर है वोह बताता है के यहाँ दो कॉलम्स है तथा वो दाईं ओर संरेखित है
पहली लाइन में जो एंट्रीज़ है मांगो और मिक्स्ड
दो रिवर्स स्लैश अगली लाइन का संकेत देता है
मैं अगली लाइन को एन्टर करती हूँ
जैक्फ्रूट
कोली हिल्स
अब मैं इस टैब्यूलर परिवेश का अंत करती हूँ
संकलन करती हूँ
ये यहाँ दिखाई दे रहा है
हमें 3 बाय 2 टेबल मिलता है यहाँ तीन रोव्स और दो कॉलम्स है
यह दो कॉलम्स राइट अलाइंड है याने के दाईं तरफ संरेखित है जो की र र अक्षर द्वारा स्पष्ट किया गया है
दो कॉलम को अलग करने के लिए हम संरेखित कॉलम अक्षरों के बीच में एक खड़ी लाइन दाखिल करते है
तो मैं यहाँ दाखिल करती हूँ
सेव करती हूँ
संकलन करे
आप देख सकते है के खड़ी लाइन आई है
अगर अंत में भी आपको खड़ी लाइन चाहिए उचित जगह पर दाखिल कीजिये
मैं इन्हें दाखिल करती हूँ सेव करती हूँ और संकलन करती हूँ
तो ये यहाँ आ गए है
असल में तो हम और खड़ी लाइन्स दाखिल कर सकते है
मैं एक और खड़ी लाइन शुरुवात में डालती हूँ
आप देख सकते है के दूसरी लाइन आ गयी है
देखिए दो और खड़ी लाइन्स
हम कुछ और अलग संरेखण की कोशिश करते है
यहाँ सी लिखते है यह कहने के लिए के दूसरा कॉलम मध्य में संरेखित हो
अब ये मध्य में संरेखित है
चलिए पहले कॉलम को बायी ओर संरेखित करते है
अभी तो यह दाई ओर संरेखित है मैं इसे बायी ओर संरेखित करती हूँ
ल सेव करे संकलन करे
अब ये बायी ओर संरेखित है
अब हम रोव्स को आडी लाइन्स द्वारा अलग करेंगे
चलिए यहाँ h लाइन ह लाइनडालते है
देखते है ऐसा करने पर क्या होता है
यह ऊपर की लाइन डालता है
अगर मैं यहाँ एक और h लाइन डालती हूँ देखिए एक लाइन आ गयी है
मैं इसे पूरा करती हूँ
यहाँ मुझे दो रिवर्स स्लैश के साथ एक ब्रेक लाइन देनी होगी और फिर h लाइन
वाक्य के शुरुवात से h लाइन शुरू होता है
अब मैंने आडी लाइन्स पूरी की है
चलिए अब तीन और कॉलम्स और एक रोव जोड़ते है
इसलिए मैं यहाँ आती हूँ और सी सी र
मैंने और तीन कॉलम्स जोड़ी है उनमें से पहले दो मध्य में संरेखित है और तीसरा वाला दाईं ओर संरेखित है
और फिर मुझे कहना है160 फ्रूट टाइप नम्बर ऑफ यूनिट्स कोस्ट पर यूनिट कोस्ट रुपीज़ h लाइन
तो मिक्स्ड बीस पचहत्तर रूपए पंद्रह सौ रूपए
जैक्फ्रूट इनमें से दस पचास रूपए पाँच सौ रूपए
बनाना ग्रीन दस डज़न बीस रूपए प्रति डज़न और कुल दो सौ रूपए
चलिए देखते है की हम इसका संकलन कर सकते है या नहीं
तो इसने एक टेबल बनाया है
दाईं ओर संरेखण की ज़रूरत को देखिए यह इसलिए ताकि हम नम्बर्स जोड़ सके
मान लीजिए के कॉलम को दो भाग में अलग करना है
उदाहरण के लिए यहाँ इन दो कॉलम्स में फ्रूट्स को विवरण है और इन तीन में कॉस्ट कैल्क्यूलेशन याने लागत गणना है
तो यह मल्टी कॉलम कमांड की मदद से किया जाता है
मैं इस तरह से करती हूँ
मल्टी कॉलम दो लीजिए मध्य संरेखण फ्रूट विवरण
पहले दो पुरे होने पर अगली कॉलम के लिए मैं टैब डालूंगी
अगली लाइन पर जाइए
मल्टी कॉलम याने बहु कॉलम तीन यह भी मध्य संरेखित होने चाहिए
ब्रेसेस के भीतर कॉस्ट कैल्क्यूलेशन स्लैश h लाइन
तो हमें यह मिला है
पहले दो में टायटल याने के शीर्षक है फ्रूट डीटेल्स अगले तीन में टायटल है कॉस्ट कैल्क्यूलेशन
यहाँ खड़ी लाइन्स नहीं है क्यूंकि हमने लेटेक से ऐसा करने नहीं कहा है
तो चलिए यह करते है
यहाँ हमें दो खड़ी लाइन्स चाहिए और यहाँ एक
उसके पहले ही यहाँ पर एक लाइन है सो इसे मैं यहाँ डालती हूँ
देखिए क्या होता है
अब खड़ी लाइन्स भी आ चुकी है
क्योंकि यह 2 और 3 एक ही अक्षर वाला तर्क है तो यह संभव है के हम उन्हें ब्रेसेस के बिना लिखे
वही चीज़ काम करती है
कभी कभी कुछ कॉलम्स के बीच आडी लाइन्स बनाना ज़रूरी होता है
हम उसे इस तरह से समझाते है
इस मैंगगो को अलग करती हूँ मिक्स्ड के बजाय इसे मालगोआ कहते है और फिर 18 किलोग्राम्स 50 किलोग्राम्स
मैं इसे डिलीट करती हूँ और यहाँ मैं कहती हूँ के ये अलफानसो है 2 डज़न 300 रुपए प्रति डज़न और कुल पन्द्रह सौ
चलिए देखते है जब इसे सेव करते है तो क्या होता है
संकलन करे
तो मुझे ये मिला है यहाँ यह हुआ है के यह लाइन यहाँ आई है और यहाँ भी और मैं ये औए ये नहीं चाहती
तो इसका ध्यान रखा जा सकता है यह कहकर के इस आडी लाइन के बजाय मुझे कॉलम 2 और 4 के बीच एक सी लाइन चाहिए
तो मुझे इसे यहाँ करना चाहिए था
चलिए फिर से इसे यहाँ वापस डालते है
H लाइन यहाँ
C लाइन 2 टू 4 ठीक है अब मेरे पास सिर्फ कॉलम 2 और 4 के बीच लाइन है
यह मध्य लाइन ने मैंगगोज़ को भारत के दो लोकप्रिय मैंगगोज़ में विभाजित किया है
हम इस टेबल को समाप्त करते है एक अंतिम रोव से
इस तरह से जोड़ निकालते है
मल्टी कॉलम 4 दो खड़ी लाइन्स राईट अलाइंड याने दाईं ओर संरेखित वरटीकल सेपरेटर याने विभाजक टोटल कोस्ट रुपीस
इसे बंद करे
अगला टैब 2200 h लाइन
अब हम यहाँ है
तो यह टेबल था जिसके साथ हमने ट्यूटोरियल की शुरुवात की थी
टैब्यूलर परिवेश के प्रयोग से बनाए गए टेबल्स के साथ कैसे काम करे
लेटेक टैब्यूलर परिवेश द्वारा बनाए गए पुरे टेबल को एक ही वस्तु मानता है
उदाहरण के लिए अगर आप लिखोगे थिस इस एएन एक्जाम्पल टेबल याने यह एक उदाहरण टेबल है
अब क्या होता है के यह टेबल इन दोनों के बीच में आ जाता है
यह एक उदाहरण है इग्ज़ैम्पल टेबल के लिए
यह टेबल चल रहे वाक्य में प्रकट होता है
सेंटर परिवेश याने मध्य परिवेश के प्रयोग से टेबल को शामिल करना संभव है
एक और सामान्य रूप से टेबल परिवेश में इसे शामिल कर सकते है अब हम बताते है बिगिन टेबल इसे बंद करे
तो क्या होता है के थिस इस एएन एक्जाम्पल टेबल
यह वाक्य अलग से आता है और जो भी इस बिगिन और एंड टेबल के बीच प्रकट होता है उसे अलग से एक टेबल के रुप में रखा जाता है
दूसरे शब्दों में भले ही टेबल कुछ टेक्स्ट के बीच प्रतीत होता है लेकिन इसे अलग से रखा गया है
यह केंद्रित नहीं है
हम यह कर सकते है के यहाँ कमांड दे सकते है centering
इसे डाक्यूमेन्ट के बीच में रखने के लिए
चलिए अब एक अनुशीर्षक याने के कैप्शन बनाते है
टेबल कैप्शन टेबल के आगे डाला गया है
मैं यहाँ एक कैप्शन डालती हूँ Caption - कॉस्ट ओएफ फ्रूट्स इन इंडिया याने के अनुशीर्षक भारत में फलों के दाम
तो यहाँ कैप्शनआ गया है
यह बहुत पास में है - मैं एक छोटी सी स्पेस याने जगह छोड़ना चाहूंगी
मैं ऐसा v स्पेस कमांड - 1 ईएक्स देकर करती हूँ
यह एक्स अक्षर के लिए जितनी जगह छोडी थी उतनी ही है
तो मैंने यह खड़ी स्पेस छोड़ दी है
अब ये ठीक दिख रहा है
डिफॉल्ट रूप से लेटेक टेबल को पन्ने के उपरी हिस्से में रखता है
ऐसा स्वचालित रूप से होता है
टेबल को अगले उपलब्ध स्लोट याने जगह पर प्रवाहित करते है
इसे समझाने के लिए मैं डाक्यूमेन्ट में से कुछ टेक्स्ट को कट और पेस्ट करती हूँ
मैं इसे डिलीट करती हूँ

अब यहाँ कुछ विवरण इन फ्रूट्स के बारे में दिया है
इसके उपरी हिस्से में जाए
यहाँ पेस्ट करे
संकलन करे
पहले जैसे टेबल पन्ने के ऊपर आया है
मैं इसमें कुछ और टेक्स्ट डालती हूँ
चार प्रतियाँ
तो अब क्या हुआ है के यह टेबल दूसरे पन्ने पर चला गया है और यहाँ और कुछ नहीं है इसलिए यह पन्ने के मध्य भाग में आ गया है
मैं इसकी एक और प्रतिलिपि डालती हूँ और कुछ और टेक्स्ट भी
तो अब क्या हुआ है के यह टायटल पेज याने शीर्षक पेज है ये टेक्स्ट पेज है और टेबल इस पेज के उपरी हिस्से में चला गया है
समीकरणों के रूप से हम लेबल्स भी बना सकते है और उन्हें संदर्भित करने के लिए उपयोग कर सकते है
उदाहरण के लिए आप यह कमांड कैप्शन कमांड के नीचे दीजिए
आपको यह कमांड कैप्शन कमांड के नीचे देना है क्योंकि कैप्शन कमांड ही टेबल नम्बर बनाता है
उदाहरणतः यहाँ टेबल 1 अपने आप इस कैप्शन कमांड द्वारा बना है
अगर आप इसके बाद लेबल डालते है तो ये लेबल कैप्शन कमांड द्वारा बनाए गए नम्बर को संदर्भित करेगा
तो लेबल - फ्रूट्स
मैं थोडा पीछे जाती हूँ और यह लाइन यहाँ जोड़ती हूँ
थे कॉस्ट ओएफ फ्रूट्स इस शाउन इन टेबल रेफरेंस याने इन फ्रूट्स की कीमत संदर्भ टेबल में बताया है आपको इसे लेबल देना होगा यह उसी तरह होना चाहिए जैसे के - टैब फ्रूट्स
मैं संकलन करती हूँ
अब इसे देखिए
पहले संकलन पर यह वेरीयेबल सौंपा नहीं गया है
इसलिए मैं फिर से संकलन करती हूँ तो मुझे यह मिला है
हम अपने आप से इल टेबल्स की सूची बना सकते है
जो अब हम समझा रहे है
मेक टायटल के बाद मान लीजिए हमें यह टेबल्स की सूची चाहिए - लिस्टॉफ्टेबल्स एक ही शब्द में यह कमांड देना होगा
तो क्या हुआ है के इसने एक टेबल्स की सूची तैयार की है
विशिष्ट रूप से हमें दो बार संकलन करना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए के टेबल नम्बर सही आए
ये यहाँ आया है इस सूची के अनुसार टेबल पेज दो में है लेकिन हमें पता है के यह पेज तीन पर है
तो यह पेज तीन में है
तो चलिए वापस जाते है और एक और बार संकलन करते है तो आप देख सकते है यह पेज तीन में है
यह पहले समझाया गया है
ठीक है यह इस भाग का अंत है जिसमें हमने टेबल्स को समझाया है
अब हम समझाएंगे के इनक्लूड graphicsइन्क्लूड ग्राफिक्स इस कमांड का इस्तेमाल करके आकृति याने फिगर्स को कैसे बनाए
इसके लिए हमें शामिल करना होगा इस पैकेज को ग्राफिक्स
अब में इसके तल पर जाती हूँ और कहती हूँ यह कमांड इस प्रकार है बिगिन फिगर इन्क्लूड ग्राफिक्स विड्थ ईक्वल्स
मेरे पास iitbपीडीएफ नामक एक फाइल है
यह देखिए के मैंने इसे इस आकृति के विड्थ याने चौड़ाई के साथ शामिल किया है जो की इस लाइन विड्थ के बराबर आता है
मैं इस आकृति को समाप्त करती हूँ
संकलन करे
तो आप देख सकते है के यह पेज के शुरुवात में आ गया है
मैं यह करती हूँ यह इसलिए है के अगर मुझे इस पुरे लाइन विड्थ का प्रयोग करना है तो
मान लीजिए मुझे इस्तेमाल करना है पॉइंट 5 जो है लाइन विड्थ का आधा और फिर उसे छोटा बनाया गया है
और ध्यान दीजिए के यह बाईं ओर संरेखित हुआ है
और जैसे के टेबल में मैं कह सकती हूँ सेंटरिंग सेन्टरिंग जो की इसे मध्य में लाएगा
मैं अनुशीर्षक याने के कैप्शन भी बना सकती हूँ फिगर शामिल होने के बाद फिगर कैप्शन बनाते है
गोल्डेन जुबिली लोगो ओएफ ईआईटी बॉम्बे गोल्डन जूबली लोगो ऑफ आई आई टी बॉम्बे
पहले जैसे मैं लेबल बना सकती हूँ और उसका संदर्भ हम रेफ कमांड देकर कर सकते है
मैं इन फिगर्स की सूची को टेबल्स की सूची के साथ दर्शा सकती हूँ
मान लीजिये मुझे अगर फिगर्स की सूची चाहिए तो मैं इस संकलित करती हूँ
मैं दो बार संकलन करती हूँ और आप देख सकते है
फिगर्स की सूची अपने आप आ गयी है
सारे फिगर के कैप्शन यहाँ दिखाई देंगे
एक आखरी चीज़ जो बतानी है है वोह है के कैसे इन फिगर्स को रोटेट याने के घुमा सकते है
यह ऐंगगल ऑप्शन द्वारा कर सकते है
मान लीजिए के ऐंगगल 90 डिग्री तक घुमाना है
तो इस आकृति पर जाइए
संकलन करते है
तो यह 90 डिग्री तक घुम चूका है
इसे माइनस 90 तक घुमाए
ठीक है
यहाँ मैं मान रही हूँ के iitbपीडीएफ उपलब्ध है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
लेटेक के साथ शुरुवात करने वाले को स्रोत डाक्यूमेन्ट में होने वाले हर बदलाव के बाद संकलन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए के जो भी उन्होंने एन्टर किया है सही है
इस ट्यूटोरियल को सुनने के लिए धन्यवाद
मैं सकीना शेख आपसे आज्ञा लेती हूँ